पेड़ पौधे है आसमान है नीचे बहुत सारे घर हैं पहाड़ पे बहोत बड़े बड़े पत्थर एंड ग्रीन कलर की घास है।

इस फोटो में मुझे एक ट्रेन दिखाई दे रही है ट्रेन का कलर रेड पीछे इसमें तीन डिब्बे है।

और पीछे एक बुलेट है पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है उसके पीछे एक ऑरेंज कलर का घर है।

इस फोटो में मुझे एक गार्डन दिखाई दे रा है गार्डन में बहोत सारे पेड़-पौधे है और ट्री है बहोत सारे झूले ल --

लहंगे का कलर येलो रेड ब्ल्यू ग्रीन पर्पल है पीछे कुर्ते है जोकि स्टैंड पे है।

चेयर्स रखी हुई है जिनका कलर ब्लैक है।